यहां पे पतले और झुरियां भी लगी हुई हैं।

में फोटो कॉपी करने की मशीन भी रखी गई--

उसके बगल में काफी सारे बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे--

पे काफी सारा फूल भी लगाया गया है।

यह एक प्लास्टिक दुकान का दृश्य है।

में काफी सारा प्लास्टिक का सामान और कुछ झोले टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

वहां पे कुछ व्यक्ति सब्जी बेचते हुए और कुछ व्यक्ति सब्जी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

उस पेड़ के नीचे काफी सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर तिर बहुत सारे तिरपाल भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे दो टेबलों में दो लैपटॉप भी रखा हुआ नजर आ रहा--

और उनके बाहर कुछ कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही ह--

यहां पे दो दरवाजे हैं जो की ब्लू कलर के शटर लगे हुए हैं।

एक दुकान में फूल से सजाया गया है।

इसमें काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इसमें काफी सारा कार्टून्स भी दिखाई दे रहा--

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जोकि सोने का कड़ा पहना हुआ है।

इसके बाहर काफी सारा बाइक खड़ा हुआ नजर आ रहा--

में ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर साईं सभानंद होंडा आर्या ऑटोमोबाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बड़ा सा काउंटर बनाया गया है।

यहां पे एक दरवाजा दिखाई दे रही है।

जो की देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा।

उपर अल्बेस्टर डाला हुआ नजर आ रहा है।

मंदिर के बाहर काफी सारे व्यक्तियों का भीड़ लगा हुआ है।

यहां पे कुछ फैन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक गुफा का दृश्य है जिसमें काफी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं और एक लाइट भी लगाया गया--